कोई सोडा एंड कॉफ़ी शॉप जिसका नाम डी.एस .पी. है जहाँ चाय - पाय कॉफ़ी -ओफी सुप -उप सब मिलता है तीन आदमी है यहाँ खाने -ओने आये है शटर है उसका एक आदमी खा रहा है एक आदमी फ़ोन चला रहा है एक आदमी पोज मार रहा है और और तो सब सही ही हैं ।

दो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है बाउंड्री भी दिख रही है एक छोटी -सी बिल्डिंग दिख रही है बहोत छोटी -सी बिल्डिंग दिख रही हैं ।

जिसके किनारे-किनारे अर्टिफिशली बनाये गए बाउंड्री टाईप में है पेड़ -पौधे --

बहोत बड़े-बड़े पुराने पेड़ है कुछ नए वाले भी है पीछे आसमान नीला हैं ।

अब पेड़- वेड़ के अलावा कुछ तो ज्यादा दिख नहीं सफ़ेद पानी निकल रहा --

ये किसी गोडाउन की फोटो है जिसपे --

ये किसी कैफ़े की फोटो लग रही है जिस में दो आदमी एक आदमी का हाथ दिख रहा है पर एक आदमी पूरा दिख रहा है चाय शायद पी रहा है या कॉफ़ी पी रहा कॉफ़ी पी रहा हैं।